यह एक बहोत ही ऊंचा घर है।

रिक्शे का आगे वाला जो चक्का है जो उसका स्प्रिंग है।

यह एक बहोत ही पुराना मुस्लिम महल है।

रूम में एक आदमी नजर आ रहे हैं।

इसमें कई लोग आदमी औरत जिम करने के लिए आते--

यह हमारी भारतीय भारत की ट्रेन है।

यह दुकान बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।